इस पहाड़ पर बहोत सारे पेड़ पौधे आसमान दिख रहे हैं।

होटेल दिख रहा है।

चारों तरफ हरियाली है पेड़ पौधे है।

यहां पर स्कूल बस खड़ी हैं।

और आसमान में बहोत सारा पानी रखा है।

कुछ आदमी काम कर रहे हैं।

जिसमें गुब्बारों से सजावट--

बहोत सारी छात्राएं कुछ चित्रकला कर रही हैं।

एक महिला उनको देख रही है।